पीले लाल कलर के कुर्सी हैं और बहुत कलर के कपड़े से पंडाल बनाया गए हैं।

एक दुकान है उस दुकान के अंदर बहुत सारे समान रखे हुए हैं।

बाहर में एक स्कूटी खड़ा है ऊपर में एल्बेस्टर है और तीन ठो खम्बे हैं।

साइड में एक लाल कलर के कुछ सामान है।

उस अह रूम के अंदर अह दो तीन बोरा भी रखे हुए हैं।

छोटा सा औ साइड में हेलमेट टंगे हुए हैं।

एक जगह पर बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

चार ठो कुत्ता भी रखे हुए हैं।

और काउंटर है काउंटर पर भी समान रखे हुए हैं।

और गेट के अंदर दो आदमी खड़ा है। गेट के सामने हरे कलर का रंग से पेंट किया है।

और ऊपर में नीले कलर का पोस्टर लगे हुए हैं।

और ऊपर में बल्ब भी लगा हुआ है।

और बहुत सारे चप्पल के डब्बे रखे हुए हैं और बगल में चार लाइट भी लगे हुए हैं।

साइड मे एक कुर्सी हैऔर एक साइड में एक कुर्सी है रेड कलर की उसपर एक आदमी बैठा है ।

और उसके साइड में एक उम खंबा है बहुत बड़े दीवाल भी हैं।

बहुत सारे आदमी मंदिर के बाहर खड़े है और--

साइड में एक आदमी खड़े हैं और दो चार बच्चे इधर साइड में खड़े हैं।

बहुत सारे लोग खड़े हैं कुछ लोग बैठे भी हुए हैं।

लोहे के अं समान से घेर दिया गया है और नीचे में बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

और एक खंभा टूटा है पानी के साइड में और लाल कलर के पट्टे रखे हुए हैं।

एक आदमी मैदान के बीच में खड़े हैं और।

एक गाड़ी है वो गाड़ी भी साजा दिया गया है।